दो नीली ड्रेस में यहाँ पे दो जैंट्स खड़े हैं। लगता है ये गाड़ियों का गैराज है। यहाँ पे गाड़ी ठीक करने आते हैं और भी बहोत सारी गड़ियाँ हैं।

ये शादी के होल का बाहर का है ये और इसकी सजावट बहुत अच्छी है की गई है| यहां पे एक --

और ये सब सीसे के बने हुए हैं। ये जो कुर्सी है ये बोहुत अच्छी लग रहीं है और ये सामान भी बोहत सारा है।

और यहाँ पे अजंता कर के कुछ है और भीड़ तो बोहत जादा है और यहाँ पे सॉप भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे एक लोग अ बिम बना रहा है और एक खड़ा है नीचे से उसमे बल्लियां लगाई गई है इसमे बहुत मोती सरिया है।

व्हाइट कलर मे भी है। यहाँ बच्चों का कोई प्रोग्राम हो रहा है। रात का समय है। लाइट भी जली हुई है और भी लोग यहाँ नीचे से खड़े हैं और ये बच्चों का डांस है।